सामने बहुत बड़ी सी एक पेड़ दिख रही है अ पेड़ के ए चारो तरफ अ पाचिल घिरी हुई है।

सड़क की तस्वीर है ए सामने एक सफ़ेद रंग के है बहुत ही खूबसूरत सी वोलवो बस खड़ी है ए साइड में ए एक गवर्नमेंट बस खड़ी हुई है।